तैर तैरना सिखाया जाता है लोग इसमें नाहते हैं और इस स्विमिंग पूल में बोहोत सारे बच्चे तैरने सिखने आते हैं यहाँ पे तैर तैरना सिखाया जाता हैं।

यहाँ पे बोहोत सारे स्कूल के बच्चे आये हुए हैं और सब --

यहाँ पे बहुत सारे किताबे रखी हुई है और यहाँ पे हमे हर तरह की किताबे मिलती है । हर क्लास की किताबे मिलती है । कंपटीशन की किताबे मिलती है । यहाँ से हम इन किताबो को खरीद सकते हैं | यहाँ पे बहुत अच्छे दामो पे किताबे दी जाती है ।

यह एक गर्ल्स होस्टल है यह गर्ल्स होस्टल बोहोत ही बड़ा है यहाँ पे बोहोत सारी लडकिया रहती है यहाँ पे --

यह एक बस स्टैंड है।

डेरी फार्म है यहाँ पे हमे दूध घी पनीर और दूध से बने हुए तरह-तरह के सामान मिलते है यहाँ पे हमे आइसक्रीम केक ये सभी मिलती है यहाँ पे आइसक्रीम का --